यह एक जिम दिखाई दे रहा हैं।

आउ एक हिंदुस्तानी औरत दिखाई दे रही है ये कोई पार्टी फंक्शन में गए हैं।

कॉलम के ऊपर में छड़ दिखाई दे रहे हैं।

कॉलोनी जैसा दिखाई दे रहा हैं।

ये फिर ये रेलवे स्टेशन का कॉलोनी भी हो सकता हैं।